यहाँ पे कितना कितनी पुरानी खंडर पड़ी हुई बिल्डिंग है और यहाँ काफ़ी सारे गेट हैं जो भी ईटों के दे --

और साबुन भी दिखाई दे रहा है कॉलगेट क्लोज_अप भी है एक कूलर भी नजर आ रहा है और यहां लाइट भी लगी हुई है।